tux typing टक्स टाइपिंग के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे:
वाक्यांशों को टाइप कैसे करें अपने शब्दों की सूची तैयार कैसे करें
टाइपिंग के लिए भाषा की स्थापना के बारे में जानकारी पता कैसे करें
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1110 पर tux typing 180 का उपयोग कर रहे हैं
tux typing खोलें
dash home पर click करें
सर्च बॉक्स में tux typing टाइप करें
tux typing आइकन पर क्लिक करें
मुख्य मेन्यू में options पर क्लिक करें
आप्शन मेन्यू प्रदर्शित होता हैअब वाक्यांशों को टाइप करने का अभ्यास करें
phrase typing पर क्लिक करें
टिचर्स लाइन में प्रदर्शित होने वाले वाक्य टाइप करें
इस मामले में यह है the quick brown fox jumps over the lazy dog
अब हमें अगला वाक्य टाइप करना होगा नहीं करना चाहिए
enter दबाएँ अगला वाक्य प्रदर्शित होता है
अब हमें वाक्य टाइप करना सीखना होगा
आप अलगअलग वाक्यों के साथ अभ्यास कर सकते हैं
अब पहले मेन्यू में वापस जाने के लिए esc दबाएँ
आप्शन मेन्यू प्रदर्शित होता है
अब हमें नए शब्दों और वाक्यों को जोड़ना सीखना होगा
edit word lists पर क्लिक करें
word list editor विंडो प्रदर्शित होती है
क्या हमें नया शब्द दर्ज़ करना चाहिए
वर्ड लिस्ट एडिटर विंडो में new पर क्लिक करें
create a new wordlist विंडो प्रदर्शित होती है
create a new wordlist विंडो में learn to type टाइप करें ok पर क्लिक करें
word list editor विंडो प्रदर्शित होती है
remove पर क्लिक करके हम टाइप किए हुए शब्द या वाक्य मिटा सकते हैं
शब्द या वाक्य को सेव करने के लिए done पर क्लिक करें और आंतरिक मेन्यू पर लौटें
आप्शन मेन्यू प्रदर्शित होता है
आंतरिक मेन्यू से आप setup language आप्शन पर क्लिक करके भाषा स्थापित कर सकते हैं
आपकी चुनी हुई भाषा में टक्स टाइपिंग इंटरफेस और पाठ प्रदर्शित होंगे
फिर भी फिलहाल टक्स टाइपिंग अन्य भाषाओं में पाठों का समर्थन नहीं करता
अब खेल खेलें
main menu पर क्लिक करें
fish cascade बटन पर क्लिक करें
गेम मेन्यू प्रदर्शित होता है
खेल की शुरुवात करने से पहले निर्देशों को पढ़ लें कि इसे कैसे खेला जाए instructions पर क्लिक करें
खेल खेलने के लिए निर्देशों को पढ़ें
जारी रखने के लिए space bar दबाएँ
अब टाइपिंग के अभ्यास के लिए आसान खेल चुनें easy पर क्लिक करें
विभिन्न विकल्पों में शामिल विंडो प्रदर्शित होता है
विभिन्न विकल्प हैं colors fruits plants आदि के नाम colors पर क्लिक करें
आसमान से गिरती प्रत्येक मछली में एक अक्षर भी है
अगर आप शब्दों को सही तरीके से टाइप करते हो तो शब्द लाल रंग में परिवर्तित होता है और गायब हो जाता है
फिर जैसे ही मछली गिरती है पेंगुइन उसे खाने के लिए दौड़ती है
अब अक्षर टाइप करें जो गिरने वाली मछली का हिस्सा नहीं है क्या होता है
अक्षर वैसे ही सफेद रहते हैं जो संकेत करते हैं कि आपको उन्हें सही तरीके से टाइप करने की आवश्यकता है
जब तक आप चाहो तब तक खेल ज़ारी रख सकते हैं
गेम्स मेन्यू में वापस जाने के लिए escape बटन दो बार दबाएँ
यहाँ आप के लिए एक नियतकार्य है
कठिनाई स्तर को मीडियम या हार्ड में बदलें और खेल खेलते रहें
इसी के साथ हम tux typing के इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमनें वाक्यांशों को टाइप करना अपने शब्द जोड़ना और खेल खेलना सीखा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
spoken tutorial project team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
spoken tutorial talktoa teacher project का हिस्सा है
यह आईसीटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है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
यह स्किप्ट लता द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद